कॉपी किताब का यहाँ पर दुकान है जो कि बहुत अच्छा है डिस्काउंट भी दे रहा है फ्री दे रहा है।

और रोड है | बहुत सुंदर रोड है | अम पूरा बढ़िया फ्रेश नया बना है |

मुस्लिम लोग का नमाज ईद है। नमाज पढ़ रहे है लोग अच्छा लग रहा है देखने मे ठीक-ठाक दिख रहा है |

आज सब कुछ ठीक-ठाक है प्यारा लग रहा है और पूरा इस पे भी बनाया गया है।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

फिटनेस जोनो टीन है कुर्सी भी बहोत सुंदर लग रहा है देखने में खुबसुर --

खूब बहुत बड़ा सा इसमें एथी है बहुत अच्छा लग रहा है माला है बहुत बड़ा सा।

और अच्छा भी लग रहा है देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और खुबसुरत भी है और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है आदमी लोग जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है जगह खुबसुरत है प्यारा लग --